एक वाटरपार्क की स्लाइड है जो स्लाइड ऐसे बस ओनली स्लाइड ही नजर आ रहे है ये स्लाइड का कलर ब्लू फिरोजी व्हाइट है।

ग्राउंड जैसा है जहाँ नीचे बहुत ज़्यदा हडियाली हरियाली है और एक हेलमेट भी रखा हुआ है नीच एक बाइक खड़ी है बाइक दोनों मैन स्टैंड पे लगी है।

एक लड़का बोट पे खड़ा है एक बोट उल्टी है दो बोट सीधी है एक बोट पर खड़ा है और एक बोट ऐसे ही खड़ी है।

बाल्टियां रखी है जिसमें फिक्स-फिश रखते है कार्टून वो भी नज़र आ रहा है उसके ऊपर स्टूल भी रखा --